जैसे कि मैं देख पा रही हु। ये एक हार्डवेयर की दुकान नजर आ रही है और इसमें एक सफेद बोरी भी रखी हुई नजर आ रही है।

पाइप भी रखा हुआ नजर आ रहा हैं ऊपर बल्ब टंगे हुए नजर आ रहे हैं दिन का वक़्त --

दिन का वक्त भी मालूम पड़ता हैं और फर्श भी नजर आ रहा हैं सामने --

बहुत सारे बाइकों पे लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं बाइकों पे बैठे लोगों के सरो पे हेलमेट भी लगा हुआ नजर आ रहा है बहुत --

और एक दुकान भी लगी हुई नज़र आ रही है दुकान के पास एक डस्टबीन भी रखा हुआ नज़र आ रहा है

दिन का वक्त मालूम होता है और ऊपर दो झंडे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे बलून भी लगे हुए नजर आ रहे हैं ।

भिंडी भी रखी हुई नज़र आ रही है शिमला मिर्च रखी हुई नज़र आ रही है ककड़ी रखी हुई नज़र आ रही है।

तराजू भी रखा हुआ नजर आ रहा हैं और उसपे रखे हुए बाट भी नजर आ रहे --

और कटी हुई ककड़ी भी रखी हुई नजर आ रही है और प्याज भी नजर आ रही है कटा हुआ नींबू भी नजर आ रहा है और एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ एक मंदिर नजर आ रहा है और उसमें एक सफेद कलर कि मूर्ति भी रखी हुई है और यह पूरा मंदिर सफेद पेंट से पोता हुआ नज़र आ रहा है उसी--

उसी की सामने एक शेफ को कुर्सी डाली नजर आ रहा है और सामने लाइट भी लगी हुए नजर रही है और ये बिजली--

और उर्सी की नीचे एक बड़ी सी हरी नदी नजर आ रही हैं और एक पेड़ा --

और नीचे लकड़ियों पर बैठा हुआ एक शेर भी नजर आ रहा है शेर की दो आंखें भी नजर आ रही है और दिन का वक्त भी मालूम पड़ता है।

और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड भी नजर आ रही है और वो सफेद कलर के दस्ताने पहने नजर आ रहा है।

और दो बिजली के तार भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं और एक लाइट का खंभा भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

दो बड़ी बड़ी शील्डे भी टंगी हुई नजर आ रही है और उनके ऊपर चलती हुई लाइटे भी नजर आ रही है एक बड़ा सा--

और एक हरे कलर का डस्टबीन भी रखा हुआ नज़र आ रहा है और एक बाइक भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और --

और खिड़कियां भी नजर आ रही है और गेट भी नजर आ रहा है दिन का वक्त मालूम--

और एक आदमी साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है।

जैसे के मैं देख पा रही हूं यह एक वॉटर पार्क नजर आ रहा है और एक बड़ी सी ठप्पी बनी हुई नजर आ रही है और बहुत --

और पानी से भरा हुआ पुल भी नजर आ रहा है और उसके ऊपर रंग बिरंगे पोल भी लगे हुए नजर आ रहे।

बहुत सारे लोहे के रडे भी नजर आ रही है एक मजदूर के सर पर लगी हुई पीली टोपी भी नजर आ रही है।

जैसा कि‍ मैं देख पा रही हूँ ये एक शादी हॉल नजर आ रहा है और बहुत सारी लाइटिंग भी नजर आ रही हैं और बहुत सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं।

और रोड भी नजर आ रहा है सफेद कलर की बस भी नजर आ रही है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है और गेट में लगी हुई छोटी छोटी भी नज़र आ रही है और--

सामने दो बिल्डिंगें भी नजर आ रही हैं और उनकी कांच की खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एक वाइट कलर का कमरा नज़र आ रहा है और उसमे जलती हई लाइट भी नज़र आ रही है ऊपर एक नयी कुर्सी भी नजर आ रही है और ए--

और बड़े बड़े जीने भी नजर आ रहे हैं और एक औरत खड़ी हुई नजर आ रही है जो झाड़ू देती हुई नजर आ रही है और छोटे --